पानी में मच्छी पाल के रखे बगल में और यहां पे एक अंकल चाय पी रहे--

यहां पे प्रीमियम प्रीमियम क्लासिक ज्वैलरीज रखें है।

ये एक शायद रिवर में सब लोग बो बोटिंग कर रहे हैं।